बागान है ये बड़ा सा एक बड़ा सा बागान है एक बड़े से खेत के बीच --

बाहर एक गेट किसी पेड़ की शाखाओ को काट के बनाया गया है या फिर यह एक प्रकार का पेड़ का डिजाइन है।